पेडी लग रही है चारों में पर्दा लग रहा और लाइट लग रही है और बीच में सोया टेबल पड़ी है और --

ये टेंपो जा रियो है टेंपो में आदमी बेठ्या हैं इने पेड़ पौधा पड़िया है इने घर सा है इने टोवर सो लाग रे --